और यहा पर एक रेट भी मोजूद हेै।

इस चित्र में देखने के लिए यहाँ पर एक आदमी सेल्फी खींच रहा है और एक आदमी बहुत सारे तेल के तेल के टिंक भरे हुए है।

इधर में देखने के लिए यहां तालाब है और वहां पर बहुत सारी महिलाए फल लेकर शॉप में बैठी हुईं हैं।

देखने के लिए यहाँ पर एक आदमी ने एक महिला मच्छियों और झिगो को दे रही है।

चित्र में देखने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े झाड़ और यहाँ पर नीले रंग का गेट है और वहां पर एक काला रंग का--

पुरानी हवेली है और यहाँ पर छोटे-छोटे हरे रंग के पौधे लगे हुए-लगे हुए है ।

और एक ही बोर्ड बोर्ड बैंक ऑफ बरोडा वोह केसी रंग का है वहाँ पर आदमीओ उन्हे खड़े एक दो आदमी की मशीन खड़ी हुई है।

और इन्हे देखने के लिए यहाँ पर देखने के लिए आसमान सफ़ेद और नीला रंग का है और हरे रंग के पौधे लगे हैं बहुत सारे झाड़ बहुत सारे हैं।